पर आसमान दिखाई दे रहा है और निचे जमीन दिखाई दे रही है।

निचे जमीन दिखाई दे रही --

और यहां पर एक लोहे का गेट भी लगा हुआ दिखाई दे रहे हैं और सीढ़ियां भी लगी हुई दिखाई दे --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

यहाँ पर ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके दीवारों का कलर रेड व्हाइट और ग्रीन --

यहाँ पे रोड दिखाई दे रहा है जहाँ पे दो बाइके खड़ी हुई इनका कलर ब्लैक और ब्लू --

कुछ पेपर्स वगैरा भी रखे हुए दिखाई दे रहा यहाँ पे पिलर भी खड़े हुए है --